यहां पर मुझे एक स्टेशन दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे बैंक की एक शाखा दिखाई दे रही--

यहां पर मुझे एक प्रिंटर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बच्चा सटक से सिंचाई कर रहा है।

यहां पर मुझे टायर दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा है।